और जो कि काफी सारे हैं।

काफी सारी सब्जी जो है बोरियो में रखी हुई है और--

और स मिठाइयां भी रखी हुई है।

एक साइड लीखा है शिव मंदिर--

पीछे भी कुछ सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक स्टेज की तरह बनाया हुआ है।

उसके ऊपर कुछ सजा कर रखा हुआ है।

और एक घर की छत हरी है।

बाहर दो द्वारपाल खड़े है।

घास के पोधै हैं और बड़े पोधै भी हैं।

कुछ घरों की छतें लाल हैं और कुछ की हरी हैं।

दुकान के पास एक आदमी और एक औरत खड़े हुए हैं।

और नीचे ये जूतें पड़े हुए हैं।